नीचे फ्लोर दिख रहा है फ्लोर पर टाइल्स लगी हैं।

स्कूटर्स दिख रहे हैं बाइक दिख रहे हैं और लोग भी दिख रहे हैं।

डेंटल क्लीनिंग पोस्टर लगा हुआ है और--

यह एक जिम दिख रही है यहां पर जिम की बहोत सारी मशीन्स दिख रही हैं।

दो लोग दिख रहे हैं उन्होंने नीले रंग के कपड़े पहने हैं।

स्कूटी बाइकस दिख रही है लोग दिख रहे हैं।

यह एक सब्जी की दुकान दिख रहीं हैं यहां पे बहुत सारी सब्जियां दिखाई दे रहीं हैं।

पैरेट दिखाई दे रहे हैं और--

यहां पर खेत दिखाई दे रहे है और बहोत सारे।

और शॉप्स दिखाई दे रही है बिजली के तारे दिखाई दे रही हैं।